तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग यहां पर एक--

तो भाई लोग देख सकते हैं यहां पर एक मंदिर है मंदिर के बाहर एक नहाने का जगह है यहां पर आप स्नान करके--

बहुत लंबा नहाने का जगह दिया गया है देख सकते हैं बहुत सारी सीढ़ियां भी है यहां पर ऊपर चढ़ने--

भाई लोग देख सकते हैं ये एक माल है दाम कम फैशन हरदम देख सकते हैं।

लिखा हुआ है कंप्लीट फैमिली स्टोर उसके बगल में न्यू साइन मल्टी कोसाइन रेस्टोरेंट है देख सकते हैं।

बहुत अच्छी बॉडी बनती है देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे डंबल रखे हुए हैं कितना अच्छा कार्पेट है यहां पे कितना अच्छा दौड़ने के लिए है।

हरा रंग की दवाई है एलोवेरा का दवाई है अखरोट का दवाई है नेचुरल दवाई है।

आप भी जा सकते हैं खरीद सकते हैं मोल भाव भी करवा सकते हैं।

देख सकते है एक ग्लास है शीशा का एक बोतल है एक क्यू_आर है एक प्लेट --

तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग ये एक ऑफिस है ऑफिस के बाहर दिया जल रहा है बहुत अच्छी ऑफिस है ये।

बहुत अच्छा पार्क लाइफ का एरिया भी है बाहर में एक पेड़ लगा हुआ है गुलाबी कलर का ऑफिस है ये शायद एक हॉस्पिटल है।

तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग ये स्टेशन बेतिया का है यहां पर देख सकते हैं प्रवेश द्वार है ये बेतिया का--

बाहर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने लोगा उनके कुछ लोग आ रहे होंगे उनको पिकअप करवाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बाइके लगी हुई हैं।

में ये ये इलाज करवाने के लिए एक कुर्सी भी लगा हुआ है एक छोटा सा गेट --

यहां पर हमारे यहां भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं देख सकते हैं ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी हो सक--

देख सकते हैं सामने में ही अल्ट्रा टेक का कोई शोरूम है देख सकते हैं रोड पर पानी फैला हुआ है शायद बारिश हुआ है लग रहा है।

तो भाई लोग देख सकते हैं ये एक बस स्टैंड है यहां पर बहुत सारी बसेस खड़ी हैं देख सकते हैं आप लोग यहां पर बहुत सारे--

एक वाइट है एक और वाइट है यहां पर गाड़ियां भी है छोटी-छोटी रेड कलर की दो टेंपू है एक--

रेड कलर का कार्पेट भी है ए_सी लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है।

बाइक शायद मैं गेस करूं तो आर वन फाइव होगा देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहां पर पानी भी कितना साफ दिख--

लिफ्ट आप लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं देख सकते हैं एस_बी_आई का कार्ड भी मिलता है यहां पर।

तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग ये एक पुल है पुल के ऊपर से गाड़ियां जाती हैं।

देख सकते हैं ये एक दुकान है जहां पर बहोत सारे खिलौने रखे हुए हैं।

ऐ भाई लोग ये एक मंदिर है मंदिर में जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं।

यहां पर श्री अन्नपूर्णा माता की मंदिर है ये देख सकते हैं आप लोग अगर आपको कोई दिक्कत है अपने परिवार में कुछ दिक्कत है।

बहुत सारे पेड़ हैं सो भी चुके हैं बहुत सारे पेड़ देख सकते हैं यहां पर एक पार टाइप का भी एरिया है।

देख सकते है छोटे-छोटे डिज़ाइन भी लगाए गए है यहाँ पर देख सकते है तीन-चार डिज़ाइन नीचे में भी है एक गेट भी है।